सुंदर खुली हुई जगह लग रही है ऊपर का जो आसमान है वो बहुत ही सुंदर नीला और वाइट के कॉम्बिनेशन में लग रहा है और जो वाइट का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा नीचा लग रहा है।

जिसकी बेल्ट की कलर भी ब्लैक है और उसने एक अ थोड़ी सी हल्के कलर की जींस पहनी हुई है और वो लोग सब सामने ख --

फिश मार्केट की तस्वीर लगती है देखने में ऐसा लगता है को यह दिन का समय की लि गई तस्वीर है यहाँ पर जो फिश कटिंग हो रही है और उसका वेट करते हुए कुछ लोग बैठे हैं। ये जो है--